बहोत सारे भीड़ लगा हुआ है।

यह बच्चे पेड़ लगा रहे हैं।

बगल में एक पेड़ है।

शायद छब्बीस जनवरी का जिसमें की बच्चे सब परफॉर्म कर रहे हैं ।

नीचे में भी बहोत सारा भीड़ है।

दो छोटे छोटे बच्चे हैं ।

पीला कलर का है।

बहुत सारे सामान रखा पड़ा है।

एक बल्ब जला हुआ है।

और एक पटरी है।

मेडिकल का और इसमें एक आदमी कंप्यूटर चला रहे--

मछली दिख रहा है बहुत सारा मछली है।